उनका लगेज बगल मे रखा हुआ है।

यहा एक सलून की दुकान है। यहा एक बच्चा अपने बालोंको कटवा रहा है।

यह एक चिड़िया घर का दृश्य है यह एक साप दिखाई दे रहा है वो पेड़ की टहनीयोमें बैठा हुआ है।

एक आदमी टोपी पहने खड़ा है बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

यहा बहुत सारे कार्यकर्ता दिखाई दे रहे है।

बहुत सारे लोग खुर्शीयो मे बैठे हुवे है झूमर लगा हुआ है।

यह एक हवाई अड़े का दृश्य है। यहा एक हवाई जहाज खड़ा है।

तस्वीर एक गाड़ी की है गाड़ी का रंग सफ़ेद है सफ़ेद रंग की गाड़ी का बोनट खुला हुआ है।

मशीनो का रंग लाल काला दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे लोग यह कार्यक्रम देखने क के लिए आए हुए हैं ल-बहुत सारे कुड्सिया लगी हुई है।